एक आदमी बेठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने चश्मा लगाया हुआ है जिसके गले में रेड कलर के धागे में कुछ लोकेट टाईप का पहना हुआ है पर्पल कलर की शर्ट पहना है पीछे बुक वगैरह रखा हुआ है रूम है।

ऊपर आसमान दिखाय दे रहा हैं आसमान नीले कलर का हैं और परपल कलर का नीचे जमीन दिखाई दे रही हैं जो बहुत खुर्दली दिखाई दे रही हैं जमीन का कलर ग्रे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिस ने वाइट शर्ट और ब्लेक पेंट पहेना छोटा सा कुछ एनिमल दिखाय दे रहा है पेड़ के पीछे खिडकियां दिखाई दे रही हैं घर में लगी हुई बहोत सारे दरवाजे दिखाइ दे रहे हैं ।

एक मेन्स सेलून दिखाई दे रहा है जहाँ पर दो चीयर रखी हुई। दो चीयर रेड कलर की दिखाय दे दो व्यक्ति दिखाय दे रहे है और एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की दाढ़ी बनाते दिखाय दे रहा है सामने आईना दिखाई दे रहा है बोहोत --

और यह एक डांस कर रही है उसके पीछे पोस्टर लगे हुए है उसमे बहुत सारे लोगो की फोटो दिखाई दे रही है और उसके पीछे ब्लू कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

पिंक कलर का बोहोत बड़ा घर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ का कलर ग्रीन और हल्का सा ब्लैक दिखाई दे रहा है। व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं रोड में खड़े हुए।